ब्लू कुछ येलो दिखाई दे रहे हैं साथ ही अगल बगल में बहोत सारे--

इस दृश्य में कुछ समारोहा हो रहा हैं जिसमें पंडाल से डेकोरेशन हुए हैं साथ ही बलून का उपयोग भी किया गया है कुछ बलून रेड कुछ--

और कुछ घर ब्लू दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में बस स्टैंड डेयरी फार्म का एक--

जाते हुए दिखाई दे रहे है और दो तीन व्यक्ति जो की दूसरे ही सब्जी वाले के पास सब्जी ले रहे हैं।

शर्ट पहना हुआ है और ब्लू कलर का जींस पहेना हुआ है।

अंदर कुछ लोग बैठे हुए ही दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक ए_टी_एम को दिखाया गया है।

ए_टी_एम का फोटो लेते हुए नजर आ रहा है ए_टी_एम के सामने कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो की गमले में लगे हुए हैं ए_टी_एम के ऊपर से एक--

इस दृश्य में एक कपड़े की शॉप को दिखाया गया है जिसमें--

और इसके सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है एक पेड़ जोकि सामने--

और एक व्यक्ति जो की हेलीकॉप्टर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहें हैं ऊपर काले बादल दिखाई दे रहें हैं।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

इस दृश्य में एक सैलून को दिखाया गया है किसका नाम जिसका नाम न्यू राज हेयर सैलून है।

लगे हुए हैं और डाइनिंग टेबल जोकि अरेंज हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कि खड़ा हुआ है और येलो कलर का शर्ट पहना हुआ--

कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे।

इस दृश्य में एक जिम को दिखाया गया है जिसमें एक व्यक्ति जोकि सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है और--

पिंक कलर के दिखाई दे रहे है कुछ व्हाइट दिखाई दे रहे है कुछ ब्लू कलर के दिखाई दे रहे है उसके नीचे ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे है और ऊपर और भी --